हरा रंग का जाली वाला बाग दिख रहा है।

लोगों ने बहोत रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं।

यह एक तीन मंजिला बिल्डिंग है जो हरा और पीला रंग से सजा है।

पीछे सफेद बिल्डिंग और साइन बोर्ड है।

इमारत के सामने एक बड़ा खुला मैदान है।

प्वाइंट टेक बोर्ड पर लिखा है।

सामने सफेद रंग के पर्दे लटक रहे हैं।

बीच में एक बड़ा घर दिख रहा है जिसमें ग्रीन कलर का टीन का छत है।

गेट के ऊपर एंट्री लिखा है।

दूसरी दुकान की बोर्ड पे मां सीता लिखा हुआ है।

मॉनिटर के पीछे एक सेल्फ दिख रहा है जिसमें मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज रखी है।

सेल्फ के राइट साइड में ए_यू_एक्स केबल और चार्जर की पैक --

राइट साइड में बहोत सारे हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

अंदर एक कार खड़ी है।

एक टीम पीला पहने हैं और दूसरी टीम सफेद टी शर्ट में है पीछे एक गोल पोस्ट दिख रहा है।

बीच में एक अल्युमिनियम की सीढ़ी लगी हुई है।

श्वेत टी शर्ट पहने एक आदमी एक रैक से किताब निकाल रहा है।

नीचे एक छोटी कुर्सी लगी है।

लेफ्ट साइड पर एक रेड कलर का रैक है जिसमें काफी सारे ग्रीन और डेकोरेटिव प्लांट्स रखे हैं।

चारों तरफ रंगबिरंगे हॉर्न स्पीकर लगे हैं।

इस वॉलपेपर पर पिज्जा बर्गर सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक का इमेज बना है।

ये एक सुनहरा मंदिर है मंदिर का डिजाइन बुद्धिस्ट लग रहा है।

पीछे नीला आसमान और हरी पेड़-पौधे दिख --

सामने एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल है जो काली और नीली कलर की लग रही है।

नीला और सफेद रंग का सुंदर गेट जो इस्लामीक डिजाइन में बना है।

गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा है।

आसमान बादलों से भरा है जो एक ठंडा और बारिश वाला मौसम होने का संकेत देता है।

चर्च के ऊपर एक बड़ा क्रॉस है ब्राउन रंग की रेलिंग वाली गैलरी दिख रही है।